जिसमें बहुत बड़े ट्रैन है उसमें एक आदमी है और बहुत सारे बैठने के लिए टाइल्स के बने हुए हैं और उसमें छोटी-छोटी घासें हैं एक बिजली के बहुत बड़े खंबे हैं।

और बहोत सारे पाइप रखे हुवे है और बोहोत सारे छोटे-छोटे पेड़ है और एक घर बने हुवे है जिसके ऊपर एक हरा कलर के कार्पेट बैठे हुवे हैउच्चेे-उच्चे पहाड़ है और बहोत सारे घर है।

इसपे ईट रखी हुई है और बहुत सारे आदमी काम कर रहे है कुछ आदमी लकड़ी के बने हुए काम कर रहे है एक कुर्सी है और एक पाइप है और बहुत सारे पिलर है जो लोहे मे डले हुए है।